और इस झूले पर स्लाइडस भी लगी हुई हैं।

और साथ में इस के यहां पर कैफे --

बहुत पेड सुंदर सुंदर और पौधे वगैरा दिखाई दे रे हैं।

और साथ में एक गमला भी दिखाई दे रहा है।

जो अपनी ग्राहकों को पेन दिखा रा है।